बिल्डिंग है जिसके सामने एक कार खड़ी है और एक बाइक भी।

जिसके ऊपर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है।

ऊपर एक सफेद कलर का आसमान है।

जिसके पास एक लड़की खड़ी होके मोबाइल चला रही है।

इहाँ पे बहुत सारे लोग एक मंदिर की ओर देख रहे हैं।